एक टोकरी मे गेंदे के फूल भी दिखाई दे रहे हैं। टोकरी बांस की दिखाई दे रही है। कुछ कलिया --

सूर्य दिखाई दे रहा है। सूर्य की रोशनी पीली सी दिखाई दे रही है। सूर्य निकल रहा है और नाव दिखाई दे रहा है। नाव में कुछ लोग बैठे दिखाई दे र --

ई पक्षीयो की दुकान दिखाई दे रही है। यहाँ पर बोहोत सारे पक्षी दिखाई दे रहे है।

लाल सफेद नीले काले ऊन भट्टयी परदे हैं| ऊपर छत का कलर सफेद दिख रहा है। नी--

सेलून की दुकान दिखाई दे रही है सेलून की दुकान की चेयर पर दो बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे अपने बाल कटवा रहे हैं।

ए उसने काली टी-शर्ट और काला पैंट पहना हुआं है। ऊपर छत पर सफेद लाइट जल रहे हैं।

म् एक हॉल दिखाई दे रहा है वहां पर शादी हो रही है। दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं पंडित जी बैठे हुए हैं।

दूल्हा दुल्हन ने अपने गलों पर माला डाले हुए हैं और बहोत सारी लेडिस हैं। एक जे --